इस ट्रक का रंग हल्के ऑरेंज रंग का नजर आ रहा है।

इस डैम के ठीक सामने सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है।

इस मस्जिद के बगल में एक बड़ा सा ग्राउंड भी मौजूद है।

जिसका नाम इंडियन ऑयल पैट्रोलियम है।

वह बहुत बड़े बड़े ट्रक वह गाड़ियां भी खड़ी हुई नजर--

चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें है जिसके बीचों बीच से झरना बेहता हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर पर एक स्कूल का बहोत ही--

फिजियोथैरेपी सेंटर नजर आ रहा है।

गार्डेन बना हुआ नजर आ रहा है।

एक बहोत ही बड़ा सा ग्राउंड नजर आ रहा हैं।

इस ग्राउंड के बगल में एक छोटा सा सरकारी स्कूल भी मौजूद है।

सामने मुझे एक बड़ी सी वर्कशॉप --

की दुकान नजर आ रही है।

ठीक सामने मुझे एक बहोत ही बड़ा सा स्टेज नजर--